बहुत सारे लोग प्रतिदिन आगते हैं और पार्टी के साथ यहां पर आते हैं और इसके सामने देख सकते हैं छोटे-छोटे ड्राइंग्स भी लगाए हैं जो कि बहुत महंगे दामों में आते हैं।

यह फल की दुकान है जिसमें केले सेब संतरे अनानास अन्य चीजें मौजूद हैं जो कि फल खाने से हमारे शरीर --

और यहां पर कितनी साफ-सफाई है और यहां का माहौल कितना अच्छा लग रहा है जैसा आप देख सकते हैं कितना प्यारा और अच्छा--

यहां पर चॉकलेट एक से एक फ्लेवर के महीने से सस्ते दामों में दोनों ही चॉकलेट यहां पर मौजूद हैं जिसका जो बजट हो उसे--

ये मैच वगैरह खेलने आते हैं जैसे आप देख रहे कि यहां पर कितनी हरियालियां हैं और यहां का--

सूखे हुए फल यहां पर मिलते हैं यहां पर तेल साबुन क्रीम अन्य चीजें यहां पर मौजूद है जो कि आप देख सकते हैं यहां पर कितने प्रकार के क्रीम पाउडर इसको --

जो कि इस आनंद वो बहुत अच्छे तरीके से उठा रहे हैं।